टीबी दिख रही है एक बड़ी म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है पोस्टर्स लगे हुए हैं लाइट जल रही है।

नदी दिख रही है पहाड़ दिख रही है पेडे दिख रहे है बड़े-बड़े--

फ्लैट दिख रहे है खिड़की दिख रही है। बार से ऊपर भी खिड़की--

लंबा-चौड़ा सा पार्क दिख रहा है हाथी दिख रहे हैं बहुत सारे।